ये चित्र एक सेन्टर का हैं। यहाँ पर लकड़ी का फर्नीचर रखा नजर आ रहा हैं। सामने दिवार पर एक खिड़की भी है और छत पर लइट भी लगी हुई हैं।

फर्नीचर लकड़ी का हैं फर्निचरो पे रजिस्टर भी रखे हुए है और कुर्सियां नीली कलर की हैं जो अच्छी लग रही हैं।

ये चित्र एक नदी से लिया गया है इस चित्र में घास भी दिख रही है और प बड़ा सा पहाड़ भी है पीछे से पानी भी है।

ये चित्र एक ऑनलाइन शॉप की है जहाँ पर सामने एक सोफा रखा नजर आ रहा है और पिनकोड जैसा भी कुछ दिख रहा है इ --

ये चित्र एक साही लांड्री एंड ड्राइकिलीनर्स हमारे यहाँ रफू रंगीन चरक पोलिश रोल मशीन का कार्य किया जाता हैं।